नीचे रेत मिटटी है ईठा है और साइड में बिल्डिंग है।

अनेक मकान बने हुए है बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है बाइक दिखाई दे रहे है एक चादर उड रही है मंदिर है दुकाने है।

यहाँ एक राजकीय भवन दिखाई दे रहा है जिसका पूरा एरिया दीवार की बाउंड्री से कवर्ड है नीचे की और बिल्डिंग बनी --

सामने की और ईंट है बड़े बड़े पेड़ है बिल्डिंग है ऊपर की औरएक बड़ी सी घड़ी लगी हुयी है।

मूर्तिंया बहुत ही सुन्दर दिखाई दे रही है।